एक यहां पे टांका बना हुआ है और ये पेड़ भी काफी सारे लगे हुए हैं।

स्टाइल शूटिंग एंड सार्टिंग के विक्रेता है और साइड में एक टाइल्स की भी दुकान है और जिसमें डायमंड --

की उसमें और चिप्स कुरकुरे वगैरा आइटम मिलते हैं।

कांच के कलर अलग अलग है पंखा लगा हुआ है।